ये एक अ जिम का पिक्चर है। जहाँ पर ब्लैक कलर की कुछ मशीनें रखी हुई हैं।

ये एक अ डांस और योगा क्लास का बैनर लगा हुआ है बड़ा सा यहाँ पर कुछ लोग बाहर की तरफ खड़े होकर पिक्चर ले रहे हैं।